इस पिक्चर में मुझे एक आदमी नजर आ रहा है।

आदमी के सर में एक गमछा लपेटा हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक तालाब नजर आ रहा है।

तालाब में चार नाव हैं।

तालाब के आस पास बहुत सारे पेड़ हैं।

घर के पास में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

दुकान के बाहर बहुत सारे बोरी हैं।

इस फोटो में मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक नदी नजर आ रहा है।

शेल्व्स के ऊपर बहुत सारे किताब और कलम रखे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे पहाड़ नजर आ रहा है।

कार के पास फ्लैग होस्टिंग का जगह है।

पेट्रोल पंप के आगे एक बाइक खड़ी है।

पूल के पीछे एक घर है।

इस फोटो में मुझे एक तालाब नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे शेल्व्स नजर आ रहे हैं।

शॉप में मुझे दो आदमी नजर आ रहा है।

शॉप के अंदर बहोत सारे बुक्स है।